यहाँ पे बढ़िया डबल बेड भी बिछा हुआ है और गद्दा भी बिछा हुआ। बेड के ऊपर तकिए भी रखे हुए है और रूम में --

ये साथ ही इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यह चित्र एक बहुत बड़ी नदी का है। जहाँं पर कुछ व्यक्ति मछलियां टोकरी में रख कर क्रिएटो में रख रह रहे हैं।